एक बाइक खड़ा हैं और पिलर्स दिए गये हैं और पिलर्स पे कुछ पिक्चर्स विक्चर्स चिपका विपका दिए गये --

बीच में गद्दा रखा गया है स्टेज टाइप का बनाया गया पीछे में कुछ महल टाइप के डिजाईन दिए गये हैं ।

और बहुत सारे कचड़े वचड़े रोड में फेंके हुए --

छोटे-छोटे सूखे-सूखे डालियाँ हैं हरे-हरे पत्ते हैं।

पर्दा लगे हुए है एल_इ_डि बॉल लगे हुए है नीचे पर्स पर--

मार्बल बिछाया गया है आसमानी कलर किए गए हैं व्हाइट से बीच-बीच--

वह बाहर से पूरी तरह से क्लीयर नहीं किया गया है विंडोज़ या उसमें भी उसमें भी कांच है।

और बहुत सारे कार वार खड़े हैं कुछ आदमी हैं और पेड़ वेड दिखाए जा रहे हैं।

वो फ्लैट उसके में एक बाउंड्री दिया गया है बाउंड्री पे बहुत सारे अंदर पे पेड़ वेड लगे हुए हैं।

एक फ्लैट का बाहर का सीन दिया गया है जिसपर लोहे की सी अं चेयर लगाई गयी है।

सब्जी मंडी दिखाया जा रहा है जो छोटा सा सब्जी मंडी का मार्केट है।

एक ऑटो स्टैन्ड टाइप का दिखाया गया है जिसके ऊपर पर एक पुल है पुल पर लोहे के ग्रील ग्रील टाइप के दिए गए हैं।

टावर्स बनाये गए सूखे से एक गाछ है कुछ खजूर वजुर के भी गाछ है कुछ गेंदे फूल के गाछ है छोटे-छोटे जिन्हें--

पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराने वाली वो बॉटल वो मशीन वशीन दिखाए जा रहे हैं।

ट्रक है ट्रक है बहुत सारे गार्ड हैं और कुछ--

पिलर्स है बीच-बीच मे बहुत सारे कुछ डस्टबिन वस्टबिन भी रखे गए है मशीन वशीन भी है बहोत --

जो उन्हे सीखा रहा है सभी के नीचे में मार्बल बिछा हुआ है और कार्पेट बिछाए गए हैं।

ये सब मे ऊपर से लिंक फैन लगा हुआ है नीचे पे फर्श पर एक जन के मोबाईल है।

कुछ बच्चे हैं जो ड्राविंग्स व्रोइंग्स क्लासेस कर रहे हैं टोपी वोपी पहनी हुई है पेड़ वेड दिखाए जा रहे हैं पेड़ पर पत्ते हैं बोहोत ।

बच्चे खेल रहे हैं कुछ बच्चे पेड़ के नीचे बैठे हुए है लोहे के पिलर्स टाइप के लगाए--

और नीचे मार्बल का काम किया गया है पूरी तरह से लाइट वाइट है बहुत सारे।